यहाँ पर मुझे किराना की दुकान काफी अच्छी और काफी बढ़िया दिखाई दे रही है।

यहां से मुझे कोलगेट ब्रश तेल साबुन आटा--

यहां मुझे कुछ आह किस गैस सिलेंडर रोटी मकानेका --

इस पिक्चर में हमें कुछ गमले कुछ पौधे दिखा दे रहे हैं।

यह मुझे लगता है कि किसी वी_वी_ई_पी का घर हो--

और मुझे लगता है कि ऐसी दुकाने नॉनवेज लोग लोगों के लिए काफी अच्छी होती है।

इस खाली मैदान में एक जे_सी_बी पडा हुआ है एक ट्रैक्टर पड़ा हुआ नजर--

यहां पर एक बोर्ड लगाया गया है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह।

जिनका नाम है डॉक्टर राकेश गुप्ता और एक है डॉक्टर शैलेश अग्रवाल।